यह एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जिसका रंग पीला और रेड कलर का है और बोरा भी दिखाई दे रहा--

एक वीणा लेकर बैठी हुई हैं।

और आसमान नीला कलर का दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसका रंग व्हाइट और ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत ही बड़ा दुकान है।

घर का रंग व्हाइट और पीला कलर से पेंट किया हुआ है।

दुकान के अंदर फूल की माला रखा हुआ है जिसका रंग व्हाइट और रेड कलर का है।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

यहां पर बहुत सारे पत्थल दिखाई दे रहे हैं।

पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत ही बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत ही बड़ा दुकान है।

बैलून का रंग व्हाइट पीला और बैगनी कलर का है।

और बहुत सारी गाड़ी भी दिखाई दे रहें हैं।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

दुकान के अंदर ब्लू और वाइट कलर का टाइल्स लगाया हुआ है और दुकान के अंदर डिब्बा भी--

घर का रंग व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

यहां पर एक बहुत ही बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है।